पानी का फुहारा दे रहा है ऊपर से पहाड़ है अगल बगल और--

गेट है उसमें देखकर हमको बहुत अच्छा लगा थैंक यू ।

देख कर हमको बहुत अच्छा लगा थैंक यू ।

बहुत सारे मकाने हैं एक कुर्सी लेके देख हमको अच्छा लगा।